चार पर व्हाइट कलर का पेंट हुआ है कच्ची जमीन नजर आ रही है।

जिसमें आरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं। कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं।

जिसमें सामने की ओर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है जिसका रंग व्हाइट है।

और एक बच्चा चेयर पर बैठा हुआ है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता दिखाई दे रहा है।